इधर दूर-दूर से पहाड़ बहोत सारे दिखाई दे रहे है |आउ छोटे-छोटे पत्थर भी निचे दिखाई दे रहे है और बहुत सारी झाड़ी भी दिखाई दे रहे है और दूर बस बादल भी दिखाई दे रहे है और पहाड़ो पर झाड़या भी बहोत सारे है।

ईधर बहुत सारे लोग बैठे हुए हे और ये लड़का पिक्चर खींचता हुआ नजर आ रहा हैं और इधर बहुत सारे ग्रीन मैट्रीज दिखाई दे रहे हैं पत्थर भी दिखाई दे रहें हैं।